एक घर दिखाई दे रहा है वहां मे ऊपर में ब्लू कलर का टीना है।

जो कि वो एक मीशीन ठीक कर रहा है।

दुकान का ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है।

यहां में दो इंसान दिखाई दे रहा है।

एक ट्रॉफी भी दिखाई दे रहा है स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है।

नीचे में छोटा छोटा घांस दिखाई दे रहा है फूल दिखाई दे रहा है वो भी ओरेंज कलर में।

ये फोटो में हमको एक कार वाश दिखाई दे रहे है जहां मैं बहुत सारा गाड़ी लोग रखा हुआ है।

ये फोटो में हमको एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

यहाँ में बहोत सारा इंसान बैठा हुआ है।

ये फोटो में हमको बड़ा बड़ा तीन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको एक टूरिज्म प्लेस दिखाई दे रहा है जहाँ बहोत सारा इंसान है।

ये फोटो में हमको लड़कियां कत्थक डांस करते दिखाई दे रहा है।

पीछे में शिव जी का फोटो लगाया हुआ है और कोने में साँप दिखाई दे रहा है।

पी में बहुत बड़ा बड़ा लोहा दिखाई दे रहा हैं।

यह फोटो में हमको एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है।

यहाँ में फूल लगाया हुआ है रेड और पिंक कलर में।

लाइट भी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है।

ये फोटो मे हमको एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां में टेबल चेयर सब दिखाई दे रहा है।

बैलून दिखाई दे रहा है जो कि व्हाइट और ग्रीन कलर में है।

इंसान सब भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहा है और थर्माकोल भी दिखाई दे रहा है।

यह एक नियाउनु का चर्च है बैप्टिस्ट चर्च ।

इंसान लोग भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है और कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

एक इंसान भी दिखाई दे रहा है जो कि पानी दे रहा है ग्रास लोग को।

ऊपर में बैनर भी लगाया हुआ है अंदर में लाइट जल के भी दिखाई दे रहा है।

एक इंसान मशीन पकड़े हुए भी दिखाई दे रहा है।

जिसका रंग सफेद रंग में है।

नीचे मे मुझे एक प्लास्टिक पाइप दिखाई दे रहे है।

और पहारी भी दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी के सामने में एक लोहा डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

आगे में मुझे एक बुलेट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे पहाड़े दिखाई दे रहें है।

मिट्टी भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में मुझे केला भी दिखाई दे रहे हैं।